यह एक सुंदर सी डांस परफॉर्मेंस दर्शार्ई गई है यह एक स्कूल की डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है।

जिसका नाम रेस्टोरेंट दर्शाया गया है।

भी दीताया गया है जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हैं।

साथ ही मे यहाँ पर व्यक्ति खड़ा देख रहा है।

यह राधा कृष्ण जी की मूर्ति नजर आ रही है।

यह तस्वीर की दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख ही पा रहे हैं यहां पर--

यहां पर टेबल चेयर रखी हुई हैं।

फार्मर मुर्गी के बच्चों को रखा गया है यहीं पर इन्हें बड़ा किया जाता है।

दूध की थैली इत्यादि रखी गई है।

यह एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस दर्शाया गया है जैसा कि आप तस्वीर में देखा ही पा रहे हैं।

यहां पर टेबल चेयर्स रखी गई है मेन चेयर यहां पर ओनर की रखी गई है।

फूल प्रतीत होते हैं इनके बीच में हरी हरी पत्तियों से भी माला बनाई--

तस्वीर खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे--

और इसपे बड़े बड़े भारी भारी समान कंस्ट्रक्शन साइट का समान लोड किया जाता है।

बड़े यहां पर एक्सरसाइज करते हुए--